दीवाल है दीवाल पे कुछ पेपर लगे हुए हैं।

उसके साथ-साथ ऐसी भी लगी हुई है पे कुछ बना हुआ है।

और यहां अंदर में ऑफिस के अंदर में दो लोग बैठे हुए हैं।